बिल्डिंग पे लिखा हुआ है गोल्ड लोन ए.टी.एम. और नीचे बहुत सारी मोटरसाइकिले स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रहे है और एक आदमी दिखाई दे रहा है ।

और यहाँ पर बहुत सारे मोटरसाइकिल रखे हुए दिखाई दे रहे है जो की अलग अलग ब्रांड के हैं और बहुत सारे लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एका --

बोहोत सारे आदमी कुछ आदमी फूल मस्ती बेचते हुए दिखाई दे रहे है और कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ फूल खरीदते हुए दिखाई दे रहे है।

वि.ओ.आर.के. के वर्क और एक आदमी दिखाई दे रहा है। जो लोअर पेहने हुए है और बनियान पेहने हुए है।

दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जो एक लोहे की पट्टी से बने हुए है उसपे --

तीन बस दो बसे रखी हुई दिखाई दे रही है दो आदमी दिखाई दे रहे है एक ग्रीन कलर की बस दिखाई दे रही हैं उसपे लिखा हुआ है सर्जरी वैन ।

आदमी औरते और बच्चे दिखाई दे रहे है जो बड़े-बड़े ढोलक बजाते हुए जा रहे हैं और लालटेन लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक एस.बी.आई. दिखाई दे रहा है लिखा हुआ और दीवाल पर एक पोस्टर चिपका हुआ है उसमे भारतीय स्टेट बैंक --

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही --

और एक स्कूल बस दिखाई दे रही है थोड़ी सी और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे लाल लाल पोस्टर लगा हुआ है ।